एक बाइक वहा पर नज़र आ रही है डस्ट्बिन वह पर दिख रही है काफी बिल्डिंग सामनेमे दिखाई दे रहे है हरे हरे वृक्ष काफी बड़े नज़र आ रहे है।

छोटासा रेस्टोरंट नज़र आ रहा है उसकी छत जो है हरे रंग की दिख रही है रिसेप्सशन काउंटर भी काफी शानदार सजाया गया है काफी बड़े लैम्प लाइटस वहाँ पर दिखाई दे रहे है।

शेड नज़र आ रहा है जो ब्लु और ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है वही वह पर काफी बड़े हरे वृक्ष नज़र आ रहे कुछ सूखे पेड़ भी दिखाई दे रहे आसमान भी साफ नज़र आ रहा।

अ वही एसी नजर आ रही है जो सफ़ेद रंग की दिखाई है और अप्पर कुछ बैग्स रखे हुये दिख रहे है और काफी अच्छा दृश्य नजर आ--

क्लास रूम नजर आ रहा है किसी स्कूल का इंस्टिट्यूट का वही वहा पर काफी सारे बेंचेस दिखाई दे रहे है बैग वहा पर रखे हुए नजर आ रहे है और वहा पर ट्यूबलाइटस नजर आ रही है एसी दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की नजर आ रही है।

दिखाई दे रही जिसकी सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है। लाईट्स और दिखाई दे रहे है और स्तंभ जो नजर आ रहा है वह नीले रंग का दिखाई दे रहा है। वही वहाँ पर एक कार नजर आ रही है जो कार पार्किंग स्लॉट मे दिखाई दे रहा है। जो काले रंग का दिखाई दे रहा है। मशिने दिखाई दे रही है जो पीले रंग की दिख रही है विंडो --

यहाँ काफी सारे ऑटो रिक्षास नजर आ रहे है जो सभी हरे रंग के दिखाई दे रही है वही कुछ ऑटो रिक्षास जो काले रंग के दिखाई दे रही है काफी सारे वहा पर बाइक सवार लोग नजर आ रहे है काफी सारे वहा पर कार दिखाई दे रही है जो सफ़ेद रंग के नजर आ रहे है।